जहाँ हमरा बुझाता की खली ऐतहा गिफ्ट वाला सामान सब भेटा ले |

कौन-कौन इंच के टी.वी. बा सब तरह के समांज बा ऊ हमनी के भेटा जाई सस्ता में भेटा जाई।

भगवान के मूर्ति थी भलाइए बा साथै-साथै फूलों के गुलदस्ता रखले बा।

इतहा बर्तन से लेके किराना सामान तक मिलत बा।